ये एक पेट्रोल पंप है एच.पी. का जिसमें शायद अभी खुला खुला है नया क्योंकि ऊपर कोई भी छत उत्त नहीं है और बगल में रोड से दो बाइक गुजर रहा है पेट्रोल पंप खाली सा है।